लड़की ह बच्चा है |

राखी लेलिओ कैंची ह चपल ह।

दुर्गा माँ हव काली माँ हव आदमी हव फुल हव फ़ोटो हव।

गेट है शटर है |

जंगल ह झाड़ ह गाछ ह।